इस फोटो में मछली नजर आ रही है। इस फोटो में लोग नजर आ रहे--

इस फोटो में पेड़ नजर आ रहा है इस फोटो में नदी नजर--

इस फोटो में पेड़ नजर आ रहा है इस फो--

इस फोटो में कपड़ा नजर आ --

इस फोटो में नजर आ रहा--

इस फोटो में नदी नजर आ रही है इस फोटो में मंदिर नजर आ रही है।

इस फोटो में बच्चे रनिंग करते नजर आ रहे--